यह एक सैलून की तस्वीर है।

यहां कुछ चेयर रखी हुई है।

बहोत सारा सामान भी रखा है।

कंप्यूटर लैब की तस्वीर है।

एक कॉलेज की तस्वीर है।

सामने एक व्यक्ति खड़ा है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है।

कुछ समान भी रखा हुआ है।

ट्रेन में भी आ रहे है।

मुझे यहां गाड़ी यां दिखाई दे उम् रही हैं।

कुछ कपड़े भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां चेयर रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

जो काफी हरा भरा दिखाई दे रहा है।